सफेद कलर की शर्ट में दिखाई दे रहा--

जहां पर बहोत ही रंग-बिरंगी लाइटे लगी हुई है।

इस चित्र में हमें बहुत सारे लोग--

कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने ये डिनर भीं लगा हुवा हैं।

दूसरी बोर्ड पर लिखा हुआ है ओढ़नी साड़ीस ।

दो कुर्सियां और सामने वॉल पर घड़ी लगी हुई है।

बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

ऑरेंज और ब्लू कलर कई फर्शिया दिख रही है।

जहां पर बहोत सारे पर्दे लगे हुए--